इसके साथ साथ हमें मिर्ची और धनिया मसालों का भी दुकान दिखाई दे रही है।

और उसके अलावा उस डैम पर बैठा हुआ एक आदमी नजर आ रहा है।

इस इमेज में हमे एक पिंजरा नजर आ रहा है।

इसके अलावा इसके आस-पास कुछ लोग दिखाई दे रहे है और खुला आसमान दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में हमे चैर नजर आ रहि है।